इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल व्यू में क्वेरीस लिखें
कैसे आर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल करें
जॉइंस का इस्तेमाल कैसे करें
एग्रेगेट फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें
ग्रुप बाय वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें
और बिल्ट इन फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें
चलिए एसक्यूएल क्वेरीस लिखने के बारे में और अधिक सीखते हैं
इसके लिए अपना परिचित लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
अब बाएँ पैनल पर क्वेरीज सूची पर क्लिक करें
और फिर क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पर क्लिक करें
पहले देखते हैं कि कैसे हम एक क्वेरी के परिणाम को क्रमबद्ध कर सकते हैं
और निम्न उदाहरण को देखते हैं कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित उन सभी पुस्तकों के बुक टाइटल और ऑथर की सूचना प्राप्त करिये
और आरोही क्रम में बुक टाइटल्स का अनुकरण करके उनको पब्लिशर के आरोही क्रम में सूचीबद्ध करिये
और यहाँ क्वेरी है सिलेक्ट पब्लिशर टाइटल ऑथर फ्रॉम बुक्स व्हेरे पब्लिशर इन कैम्ब्रिज आक्सफोर्ड आर्डर बाय पब्लिशर एएससी टाइटल एएससी अतः ध्यान दीजिये कि कॉलम नामों से क्रम को दर्शाने के लिए हमने आर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल किया है
साथ ही अल्पविराम कैरेक्टर्स पर भी ध्यान दीजिये जो और क्रमबद्ध करने के लिए तथा अधिक कॉलम्स को जोड़ने में मदद करता है
और आरोही या अवरोही क्रम को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हम प्रत्येक कॉलम के आगे केवल आ एस सी या डी ई एस सी टाइप कर सकते हैं
अब फाइल मेन्यू बार के नीचे रुन क्वेरी आइकन पर क्लिक करते हैं
यहाँ पहले पब्लिशर से क्रमबद्ध है और फिर बुक टाइटल से क्रमबद्ध पुस्तकें हैं
अबbook टाइटल्स की एक सूची बुक इश्यू डेट्स के साथ प्राप्त करते हैं जो अभी तक सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गयी हैं
चूँकि टाइटल्सशीर्षक बुक्स टेबल में हैं और बुक इश्यू डेट बुकसिश्यूड टेबल में है
हमें किसी तरह से इन दोनों को जोड़ना होगा
अतः हम इन दोनों टेबल्स को जोड़ने के लिए जोइन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे
और हम इन दो टेबल्स को जोड़ने के लिए समान कॉलम बुकिड का इस्तेमाल करेंगे
अतः क्वेरी है सिलेक्ट bटाइटल iइश्यूडेट iमेम्बेरिड फ्रॉम बुक्स ब जोइन बुकसिश्यूड आई ओन bबुकिड iबुकिड व्हेरे चेकडिन फलसे फ्रॉम वाक्यांश में अक्षर ब और आई पर ध्यान दीजिये
इन्हें ऐलीयसेस कहते हैंजो बेहतर पठनीयता के लिए या तो विवरणात्मक या केवल एक अक्षर हो सकते हैं
ध्यान दीजिये कि बुकिड कॉलम दोनों टेबल्स में हैं
अतः किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम कॉलम्स नेम्स को निर्दिष्ट या योग्य करने के लिए एलीयसेस का उपयोग करेंगे
ठीक है अब ध्यान दीजिये कि हमने फ्रॉम वाक्यांश में जोइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए दो टेबल्स को जोड़ लिया है
और हमने जोड़ने के लिए बुकिड कॉलम को लिखकर स्पष्ट किया है ओन bबुकिड iबुकिड अतः चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं
और हम पुस्तकों और उनके इश्यू डेट की एक सूची देखते हैं और यह कि चेकडिन स्थिति चेक्ड इन नहीं है
ठीक है यह भी ध्यान दीजिये कि परिणाम में केवल मेम्बेरिड है
यह ज्यादा लाभदायक नहीं है
अतः हम मेंबर नेम्स कैसे दर्शायें जो मेंबर्स टेबल में हैं
सरल है हम मेंबर्स टेबल को अपनी क्वेरी से निम्न प्रकार से जोड़ते हैं सिलेक्ट bटाइटल iइश्यूडेट iमेम्बेरिड mनामे फ्रॉम बुक्स ब जोइन बुकसिश्यूड आई ओन bबुकिड iबुकिड जोइन मेंबर्स एम ओन iमेम्बेरिड mमेम्बेरिड व्हेरे चेकडिन फलसे अतः मेंबर्स टेबल और मेम्बेरिड कॉलम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किये गये दूसरे जोड़ पर ध्यान दीजिये
चलिए क्वेरी रन करते हैं
यहाँ मेंबर नेम्स पुस्तकों के साथ हैं जो उन्हें जारी की गयी हैं
अगला एग्रीगेट्स और ग्रुपिंग के बारे में सीखते हैं
हम लाइब्रेरी के सभी सदस्यों की गिनती कैसे प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ एक क्वेरी है सिलेक्ट COUNT एएस टोटल मेंबर्स फ्रॉम मेंबर्स अतः यहाँ काउंट पर ध्यान दीजिये
इसको एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं क्योंकि यह रेकॉर्ड्स के समूह का मूल्यांकन करके केवल एक वेल्यू देता है
साथ ही हमने एक Aliasउपनाम टोटल मेंबर्स भी जोड़ लिया है
अब क्वेरी रन करते हैं
अतः यहाँ बेस ने सभी 4 सदस्यों के रेकॉर्ड्स का मूल्यांकन किया और संख्या 4 वापस की जोकि सदस्यों की कुल गिनती है
एग्रीगेट फंक्शन्स के कुछ और उदाहरण हैं सुम मैक्स और मिन
अब ग्रुपिंग सूचना के बारे में सीखते हैं
कैसे हम प्रत्येक प्रकाशक के लिए पुस्तकों की गिनती प्राप्त कर सकते हैं
यहाँ क्वेरी है सिलेक्ट पब्लिशर COUNT एएस नंबर ओएफ बुक्स फ्रॉम बुक्स ग्रुप बाय पब्लिशर आर्डर बाय पब्लिशर नये ग्रुप बाय वाक्यांश पर ध्यान दीजिये
अतः हम प्रत्येक पब्लिशर के लिए रेकॉर्ड्स को समूहीकृत करने के लिए पब्लिशर और बुक्स की संख्या तथा ग्रुप बाय चुन रहे हैं
अब क्वेरी रन करते हैं
उनके सामने प्रत्येक प्रकाशक का नाम और पुस्तकों की संख्या पर ध्यान दीजिये
आगे एसक्यूएल में फंक्शन्स के इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं
फंक्शन्स स्टेटमेंट्स वक्तव्य होते हैं जो एक वेल्यू वापस करते हैं
उदाहरणस्वरुप CURRENT DATE आज की तारिख देता है
अतः सभी पुस्तकों के टाइटल को सूचीबद्ध करते हैं जो सदस्यों द्वारा वापस नहीं की गई हैं
और क्वेरी है सिलेक्ट bटाइटल iइश्यूडेट iरिटर्नडेट फ्रॉम बुक्स ब जोइन बुकसिश्यूड आई ओन bबुकिड iबुकिड व्हेरे चेकडिन फलसे एंड रिटर्नडेट ल्ट CURRENT DATE अतः CURRENT DATE फंक्शन के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिये
हम उन पुस्तकों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी रिटर्न डेट आज की तारिख से पहले है
चलिए क्वेरी रन करते हैं
और यहाँ पुस्तकें हैं जो वापस नहीं की गई हैं
एचएसक्यूएलडीबी द्वारा प्रदान किये गये फंक्शन्स की सूची के लिए इस पर जाएँ httphsqldborgdoc20guidebuiltinfunctions chapthtml यह वेबसाईट देख कर पूरा यूज़र गाइड देख सकते हैं
httpwwwhsqldborgdoc20guide यहाँ एक नियत कार्य है निम्न के लिए अपनी एसक्यूएल क्वेरीस लिखिये और जाँचिये 1
लाइब्रेरी में सभी पुस्तकों की गिनती प्राप्त करिये
3
सदस्यों के नाम और उनके फोन नम्बर्स की सूची प्राप्त करिये जिन्हें पुस्तकें आज ही वापस करनी है
समझाइये कि यह क्वेरी क्या करती है
सिलेक्ट एएस टोटल कॉस्ट ओएफ कैम्ब्रिज बुक्स फ्रॉम बुक्स व्हेरे पब्लिशर कैम्ब्रिज इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस एसक्यूएल व्यू में अधिक क्वेरीस के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि कैसे एसक्यूएल व्यू में क्वेरीस बनाएँ
आर्डर बाय वाक्यांश का इस्तेमाल कैसे करें
जॉइंस का इस्तेमाल कैसे करें
एग्रीगेट फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें
ग्रुप बाय वाक्यांश का इस्तेमाल करें
और बिल्ट इन फंक्शन्स का इस्तेमाल कैसे करें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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद